और बांस उस बांस का टट्टी है। एकठो है। एकठो बोर्ड रखा हुआ है। उम्म ऊपर में लिखा हुआ है बोल --

पानी पी रहा है और ठेला ट्रेक्टर लगा हुआ है। बंद है। अभी कोई नहीं जा रहा है।